पार्टी चल रही है और इसके रास्ते मे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है और फ़िरोज़ी कलर के परदे लगी हुए है वाइट कलर का मोर खड़ा हुआ है।

जो कुछ रेड सा कुछ पीला सा कुछ ग्रीन सा दिखाई पड़ रहा है और सामने झाड़ पेड़ नज़र आ रहे हैं जो--

सामने ही एक डम्मी नजर आ रही है जिसने पिले कलर की फ्रॉक मे रे-रेड बैलट पेहना हुआ है उस --

बहुत सी चिड़िया नजर आ रही है जो पिंजरे के अंदर हैजिनकी लोहे की सलाखे हैऔर कुछ दाना भी खा रहे है।

ये चक्र जैसा दिखाई दे रहा है और आगे बहुत सारे चक्र दिखाई दे रहे है साइकिल भी दिखाई दे रही है उसका फर्श सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है।

कंघी करी हुई है जिसने मांग निकाल के अपने सर पे सिंह की दीवारें यम फीरोजी कॉलर की दिखाई पड़ रही है।

पीछे एक दीवार एक भैया दिखाई दे रही जो दीवार लाइट कलर की है भैया ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई दीवार में घड़ी है दरवाजा है और खिड़कियां है और स्टार बना हुआ टंगे हुए हैं।

इसमें चार खिड़किया नजर आ रही है हरा झंडा नजर आ रहा है आसमान नजर आ रही है सीढ़ियां भी दिख रही है और ऊपर कुछ फ्रंट में दिखाई पड़ रहा है।

झाड़ पेड़ नजर आ रहे है एक रेड कलर की शर्ट में एक भईया ऊपर बैठे हुए है।